सामने यहाँ रोड पे बिलकुल चारो गाडिया एकदम रास्ते पे बीच में खड़ी हुई है।

यहाँ पर कई सारी बाईसाइकल लाईन से खड़ी हुई हैं जो कि बगल में दो बच्चों की और साइकिल खड़ी हुई हैं।

टीशर्ट टगी हुई है। यहां पे सफेद रंग की एल ई डी लाइट जल रही है। एसी दिख रही है आदि --

कुछ नहीं है। साफ बिल्कुल पानी दिख रहा है। नदी बिल्कुल साफ है।

न् यहाँ पर तीन पुतले दिख रहे हैं। एक पुतले ने पीले कलर का कपड़ा पहना हुआ है जो --

सामने सीमेंटेड रोड दिख रही है और उसके अगल बगल कई तरह का कई घासें हैं।

सामने कई मंजिला ऊँची ईमारत दिख रही है जिस --

और उसमें से आम व्यक्ति भी हैं जिसमें से पुरुष और महिला दोनों हैं।

चिता है जो कि काले और पीले रग में है।

जोकि उसके मदद करा रहा है जिसने आसमानी कलर की टीशर्ट और --

यह एक वाईट कलर का व्यक्ति है। जोकि वाईट टीशर्ट ब्लेक कलर की लोवर पहना हुआ है।

मेरे सामने रस्सी बंधी हुई है। रस्सी के ऊपर कई प्रकार की चीजें टाँगा हुआ है। जैसे कि शैम्पू ।

लाल रंग साड़ी पहनी हुई है औ उसके आगे दो व्यक्ति और दिख रहे हैं जिन्होंने सफेद रंग का --

सामने घर बन रहा है। घर की छत पर सब मजदूर खड़े हुए हैं।